आगे मूर्ति है पत्थर का कुछ बना हुआ है आगे शेर भी है नकली दो एक ही में जॉइंट है फिर --

खंभा बाटे। शेर बाड़ो सो। नकली के मूर्ति बा। पीछे पौधा बा।

देखो टाइल्स लगावल बाटे कुछ पोस्टर चिपकावल बाटे दुह तीन गो आदमी बा दु तीन मेहरारू बैठल बड़ी सन कुर्सी पे।